एक खंभा खड़ा हुआ है और पीछे एक पेड़ भी लगा हुआ है।

कांच के गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है।

यहां एक गाड़ी भी खड़ी हुई है नीचे इंटरलॉकिंग हुआ है और मैदान पूरा साफ हैं।

देखने से लग रहा है कि जैसे यहां घर के बाहर धूप हुई है।

जहां एक डॉक्टर एक लड़के के पीछे सुई लगा रहा है।

और ये पीछे अलमारी लगी हुई है।

काउंटर पर ही बहोत सजावट करी गईं हैं।

और ऊपर तीन फ्लोर की यह बिल्डिंग में कांच भी लगा हुआ है।

ये डी_जे जमीन पर रखे हुए हैं और जमीन पर पीछे की ओर बहोत पेड़ ल भी है।

ऐसा लग रहा है जैसे ये बगीचे में खड़े हुए है।

सब्जी की ठेली लगा कर बैठा हुआ है और सामने भी बहोत सारी सब्जियों की दुकान हैं।

ये एक रिलेयंसस और ये टेक्निकल स्टोर लग रहा है।

बगल में एक पीले रंग का सटर लगा दिख रहा है।

घर लग रहा है जहां पर दो खाट बिछी हुई है किनारे किनारे बहोत सारे पेड़ पौधे रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग मछलियां खरीद रहे हैं।

और पीछे लग रहा है कि जैसे ये फूल दीवाल के सारे टंगे हुए हैं।

देखने में ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया लग रहा है और सब ने मास्क पहना है।

यहाँ पर एक बेंच प्रेस वाली मशीन भी हैं नीचे हरा टार--

हॉल है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और चट्टान को देखकर लग रहा है कि ये काफी पुरानी हैं।

और मकान मे चार खंभे लगे हुए है।

साथ ही यहां पर पीले रंग से एक दीवाल पर लाइट लगी हुई है।

नीचे आसमानी मिट्टी लग रही है और ऊपर हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

देखने में ऐसा लग रहा है कि ये चर्च काफी दिन से बंद हैं।